ऊपर आशमान भी दिखाई दे रहा है और नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है यहां पे रोड भी दिखाई दे रहा है|

यहाँ पे दीवार भी दिखाई दे रही है जिसका कलर वाइट है। यहाँ पे बोहोत सारे परदे भी लगे हुए हैं। जिनका कलर वाइट येल्लो यहाँ पे टीवी भी दिखाई दे रही है और नीचे --

एक मन्दिर दिखाई दे रहा है जिसके दीवाल का कलर येल्लो है | यहाँ पे कुछ कमरे और लाइट भी दिखाई दे रही है |

यहाँ पे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके दीवार का कलर रेड और व्हाइट है।

ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है फिर बाउन्ड्री भी दिखाई दे रही है नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है |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

पे रोड भी दिखाई दे रहा है और घास भी उगी हुई दिखाई दे रही है।

चेयर भी दिखाई दे रहे है| यहाँ भी दिखाई दे रही है| नीचे ग्रीन कलर का कार्पेट भी बीछा हुया है। यहाँ दिखाई दे रही |